सामने एक अअ ऑटो रिक्शा हैं जो नीचे ग्रीन कलर का और उसकी छत पीले कलर की हैं और काँच लगा हुआ हैं।

ऊपर छत काले कलर की है जिसमे सफ़ेद लाइट लगी हुई है और साइड में एक --

आदमी का हाथ है और उसके उस साइड बहोत सी फाइलें रखी हुई हैं।

और उसने तीन पंखे दिखाई दे रहे हैं साइड के दीवाल ऊपर सफेद नीचे नीले कलर की है।

डिश राखी हुई है जो की ऑरेंज कलर की है और सामने दिवार मे --

चंद्रमा की डिजाइन के है और ऊपर लाइट लगी हुई है।

बहोत सारे पेड़े दिखाई रहे है दूर एक डेपी दिखाई दे रही है।

सामने एक अः बिल्डिंग दिख रही है जो सफ़ेद कलर की है वो--

ऊपर छत में ब्लैक कलर का पंखा--

उपर छत भी काले कलर की है जिसमे सफेद लाइट लगी हुई हैं।

और एक साईड की दीवार ग्रीन कलर की है जिसपे बोहोत सारे फोटो लगे हुए है और सामने कुछ आदमी दिख रहे है।

पिली घास लगी हुयी है और एक खुर्ची रखी हुयी है जो लाल कलर की है और घर का कलर ऊपर पीला --

चॉकलेटी कलर बने हुए है और सामने जो आदमी है--

सामने वो एक बड़ी सी टेबल जिसमे बहोत सारी--

और सामने दीवार सफ़ेद कलर की हैं जिसके ऊपर एक लम्बी फोटो और उसके दोनों साइड को--

तीन कलर की दिख रही है और पीछे बोहोत सारी बिल्डिंगे दिखाई दे रही है ऊपर सफ़ेद आसमान दिख रहा है निचे छत --

बोर्ड लगा हुआ है जो काले कलर का है जिसमें सफेद अक्षर से कुछ लिखा है ऊपर नेहा--

सामने एक घर है जिसमे लाल लाइट दिखाई दे रही है।

क्रीम कलर की है जिसके सामने घर है जो पीला और लाल कलर का दिख रहा है और नीचे बहुत सारे --

सामने एक बड़ा सा ग्राउंड है जिसमे नीचे हरी हरी घास--

आ ने एक हरे कलर की लाइट लगी हुई है और गोल सफेद लगी हुई है नीचे टेबल है जिस पे बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं एक लैपटॉप रखा है और एक लड़ --

सामने एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमें बड़ी लंबी टेबल बनी हुई है।

बोहोत सारे पेड़े दिखाई दे रहे है कुछ हरे कुछ ब्लैक एंड वाइट दिख रहे है।

सामने एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जो सफ़ेद कलर की है जिसके बिच में एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जो --

और नीचे कांच के गेट बने हुए हैं।

अं दूर बहुत सारे पेड़े दिखाई दे रहे है सामने सड़क--

लिखा हुआ है और नीचे अ पे अ क्लॉक डी एस --

काले कलर के कुछ उठाने वाले पट्टे टांगें हुए हैं नीचे फर्श का कलर सफेद है ऊपर--